यख मा जी एक बड़ु बारिकु मैदान कर दिखेण लग्युं यख मा जी कई सारा लोग छन यख मा जी एक बड़ी बारिकु नदी कर छन नदी का किनारा मा जी नाव छन लगीं।

यख मा जी कई सारा लोग छन यख मा जी जु छा एक बैंक छा य बैंक कु नौ एच.डि.एफ.सी. बैंक छा।

देखो भाईजी ये एक बडु-बरिकु कमरा यखमा जी कई सारा लोग छन यखमा जी जो च कई सारा लड़का छन यखमा जी यु कुछ खाण छन लाग्यां दिखण मजी यु पिज़्ज़ा छन खाण लाग्यां दुइ पिज़्ज़ा छन यखमा जी मांग्या।

यख मा जी एक लाल रंग कु बोर्ड लग्युं ये पर छ लिख्युं बाल दाढ़ी यख मा जी जु छा नाइ वालु छा यख भितर एक पोस्टर छा लग्युं यख लोग अपड़ा बाल काटोंण औंदान दाढ़ी बनोंण औंदा छन।

यख मा जी एक बड़ु बारिकु कमरा यख मा जी कई सारा लोगन यख मा जी जु छ एक आदमी एक लड़की तें कुछ पुरुष्कार देणं लग्युं ट्रॉफी देणं लग्युं यख मा जी मेज का एंच पाणी की बोतल रखी कई सारी किताबें रखीं।